यहां पर दो बैठने की बेंचेन्स भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है मेट्रो का--

और बालकनी नजर आ रही है दरवाजे दिखाई दे रहे हैं नीचे को चप्पल भी पड़ी हुई दिख रही है।

और उनका जो बात और नीचे बहुत सारी पब्लिक भी खड़ी हुई--

आसपास देखिएगा कई सारे पेड़ भी--

जो दो लड़के यहां पर बाहर कि ओर खड़े हैं उन्होंने पीछे बैग टांगा हुआ है यहां पर बहुत सारे फ्रूट नजर आ रहे है।

जिसकी रिपेयरिंग चल रही है बड़ी-बड़ी बल्लियां यहां पर लगी हुई है नीचे काले रंग की बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

राजस्थान लोग परिवहन सेवा अंदर कुछ पैसेंजर भी बैठे हैं और बाहर देखिएगा कुछ लोग भी खड़े हुए--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर एक कलश टंगा हुआ है सामने दीवार पर देखिएगा दो बटरफ्लाई के --